और छट एक श्रद्धा का परव है पर्व है।

बहुत सारी किताबे हैं | यहाँ पे हम किताब कॉपी खरीद सकते हैं | यहाँ पे हर तरह की किताबें हमें मिलती है हम यहाँ से हर तरह की किताबों को खरीद सकते हैं ।

यह लखीसराय का सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है यह कॉलेज बहुत ही बड़ा है यह कॉलेज देखने में बहुत ही सुंदर भी है।

यह एक पार्क है इस पार्क में बहोत तरह-तरह के पुतले हैं और यहाँ पे लोग घूमने आते हैं बैठने आते हैं यहाँ पे लोगों को आना अच्छा लगता है।